घने पेड़-पौधे नजर आ रहे हैं बहुत बड़े-बड़े हरे-हरे पेड़ लगे हुए हैं।

इसमें कुछ दो शेटरो की दुकाने भी बनी हुई है और उसके पीछे एक --

एकदम खाली से है तो कुछ में हरियाली आई हुई है और नीचे भी हरी-हरी घासें --

ये एक छोटा-सा कमरा है जो की एक पैथोलॉजी लैब की तरह लग रहा है।

नीचे कुछ महिलायें और कुछ पुरुष खड़े हैं और कुछ वाहनें खड़े हैं।

यहाँ एक खेत है जिसमें बहोत हरी-हरी घासें उगी हुई हैं ।